यहां पास बहोत सारे कांच के ग्लास लगाएं गए हैं यहां पास बहोत से लोग खड़े हुए हैं।

साथ में यहां पास बहोत सारी छोटी छोटी दुकानें--

साथ में यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

यहाँ पस एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है और यहां एक छोटा सा ग्राउंड बना हुआ है।

साथ में यहाँ पास कुछ डस्टबिन भीं रखें गए हैं बहुत से लोग खड़े हुए हैं।

साथ में बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं उसे कांच के ग्लास के अंदर रखा गया है।

बाहर के तरफ में चार से पांच कांच के ग्लास लगाए गए है।

और यहां पस कुछ लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारी बस खड़ी हुई है साथ में यहां कुछ दुकाने हैं।

कुछ लोग यहां बस खड़े हुए हैं और यहां पर बहुत सारा मंदिर का सामान मिल रहा है।

यहां पास एक छोटा सा ग्राउंड बनाया गया है ग्राउंड में बहोत सारी रेता डली हुई हैं।

यहां पास कुछ ए_सी भी लगाया गया है और तीन से चार कैमरे लगाए गए हैं।

यहां पस लकड़ी काटने की मशीने भी रखी हुई है कुछ लोग लकड़ी काट रहे हैं।

यहां पर बहुत से दुकानों के अंदर अलग अलग तरह की मशीनें रखी हुई हैं।

तीन से चार गाड़ी खड़ी हुई हैं और बाहर की तरफ में बड़े अक्षरों में नाम लिखा गया है बोर्ड पिंक कलर का बनाया गया है बाहर कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

एक बहुत बड़ा टैंकर खड़ा हुआ है और बाहर के तरफ में--